--तथा बहुत सारी बाइक पार्क है वह फर्स्ट फ्लोर पे एक आदमी बाहर की तरफ खड़ा है आस पास पेड़ पौधे लगे हुए है और पार्किंग बना हुआ है।

वह एक बोर्ड पर कॉफी एंड टी कॉर्नर --

क्लासरूम है यहाँ बहुत सारे बच्चे स्टडी कर रहे हैं वह टेबल पर बैठे हुए हैं सामने एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ हैं ।